इस फोटो के अंदर बहुत बड़ा खुला आसमान दिखाई दे रहा है खुले आसमान के नीचे सफ़ेद भवन भी दिखाई दे रहा है भवन का गेट --

दिवार में काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं और खड़े रखे हैं कुछ व्य एक वयक्ति --

से आ जा रहे है बगल में भी एक घर है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है तथा एक--

--ता भी है मोड़ भी है तथा हरियाली भी दिखाई दे रही है ।

जो की रंग-बिरंगा है उसके चारो ओर अँधेरा छाया हुआ है तार भी बिछे हुए है।